इधर बहोत सारी अ बसेस है जहां पे हम अ--

कोई वन डे ट्रिप पे जाते हो तो उन लोग रेंट पे कार देते तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कार का--

सब अपने बॉडी को हिट करने के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मतलब--

मतलब रूम है यहां पे आप घूमने गए हो।

ये डेकॉर्डिंग का कोई मतलब सॉरी पोस्टकार्ड का कोई कंपनी है वीफास्ट करके आई थिंक सो वो ही है मतलब पोस्टकार्ड मतलब आप जहां पे आप अगर आपको लैटर भेजना हो--

एक ज्वेलरी शॉप हो जाती है जहां पे आप विजिट करते हो और बार-बार देखने मिलता है आपको--